ये देखिये कितना बड़ा झूला है जिस पर व्यक्ति बैठकर हैं।

देखो कितना सुंदर दिखरिया है बाहर से देखने के लिए यहाँ पर दवाईयां दी जा --

जहाँ देखो कितना बढ़िया वो है।

मकान कितना बढ़िया बना हुआ है कुछ ऊंचे पर बना हुआ है।

जो बग्गी होती है उसको भी सजाया गया है। काफी बढ़िया फूलों के द्वारा।

पेप्सी जूस --